मंत्र पढ़ रहे हैं और सभी लोग बैठ के मन पंडित जी के कथा को सुने जा रहे हैं।

बहोत काम के लिए शॉप है।

और सब लोग पूजा कर रहे हैं।

यह एक रास्ता है जो सीधे चला जा रहा है।